ये एक टॉवर है। ये टनॉल पर है। इससे रेडियो सुनते है। ये गोरुखपुर का सबसे बड़ा टॉवर है और यहां पेड़-पौधे भी हैं। इधर लाइट का काम भी होता है। यहां बिजली बिल भी जमा होता है और ये रेडियो --

एक दुकान है जहाँ पे ज़रूरत के सामान मिलते हैं। झाड़ू --